देख रहे हैं की हमारे सामने एक बहोत बड़ा सा रोड नजर रोड के साइड में कॉर्नर पे एक पार्किंग टाइप की बनाई गई जहाँ बहोत सारी कार लाइन से खड़ी हुई हैं पार्किंग के पीछे बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हैं एक पीछे खंभा नजर आ रहा है।